एक गुफे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।

कुछ पुराना आइटम कोई किरानीदार शॉप जैसा है ट्रेडर शॉप --

लाइटस है और स्टैंड्स में मुर्गी है।

ये कुछ बड़ा हुआ कमरा नजर आ रहा है जहां पर ढेर सारे बेड्स --

रखे हुए नजर आ रहे हैं सेम बेडशीट के फॉर्म हॉस्पिटल जैसा लग रहा है बड़े रूम में फैन वगैरा।

और यहां पर बहुत ढेर सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और हेलमेट है साथ में कलर-कलर रंग-रंग की पर्पल ग्रीन --

झुमके आइटम्स लग रहे है ये ज्यादातर--

यहां पर सब लोग कटिंग कर रहे हैं लकड़ी कटिंग।

जो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग जैसा नजर आ रहा हैं।

पेट्रोल पंप नजर आ रहा हैं यहाँ पर कार खड़ी हुए दिख रहीं हैं और कुछ एक व्यक्ति गाड़ी चलाते हुवे--

और ये जैसा लग रहा है पेट्रोल पंप है ये।

बड़ी-बड़ी ऑफिस के जैसे बिल्डिंग नजर आ रही है ये आसपास।

हरे भरे झाड़े नजर आ रहे हैं ग्रीन ग्रीनरीज़ --

ऊपर से नीचे के साइड में एंड पीछे से और एक लोग आ रहे हैं।

यहां पर फैन और वो सब लगा है।

झाड़ पेड़ पौधे और हरी घास नजर आ रही है नीचे के साइड में।

सारा का सारा हरा हरा है कुछ गुंडो फतरे भी है यहां पर।

यहां पर फंक्शन का माहौल नजर आ रहा हैं।

यहां पर सबको यहां पर कुछ फंक्शन जैसा नजर आ रहा है।

व्हाईट स्टेचू मे कुछ मंदिर के जैसा नजर आ रहा है एंटेरेंस जो कमान--

दिख रहे हैं गेट दिख रहे हैं अंदर हरियाली झाड़ी--

और दीवान डाले हुए यहां पर चेर है और बीच में--

यहां पर बहोत सारे कर्टन्स यानी कि पर्दे--

लटके हुए नजर आ रहे हैं कुछ ये पर्दों का शॉप कर्टंस का शॉप जैसा नजर आ रहा है।

रंग बी रंग पर्दे कर्टंस यहां पर लगे हुए नजर आ रहे हैं कलर्स कलर्स के।

जो कलर-कलर के क्लोथ्स नजर आ रहे हैं ब्रांडर्ड --

मटेरियल्स रंग भी रंग कलर के बॉल्स के शॉप नजर आ रहा है ये।

पट्टी करा हुआ नजर आ रहा है वो पैर पे सॉक्स पहने हुए हैं कुछ रूम में पैर ऊपर कर कर दिखा--

रूम जो पहले रहते थे ना पत्थर के जो बने हुए वैसा कुछ खंडरिया नजर आ रहा है और वहां पर--

पी_ओ_पी के जो लाइट्स रहते हैं उसके ऊपर शैडो शो हो रहा--

बिस्किट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं इस केक के ऊपर और केक भी बहुत सुंदर है।

आसपास पूरा कुछ शांत है बाइक्स वगैरह खड़े हुए कुछ एक बड़े शॉप के सामने कुछ होटल के पास।

रोड साइड पे कुछ यहां पर शॉप्स हैं।

रोड साइड पे लेकर जा रहे हैं कुछ अच्छे फूलों का डेकोरेशन किया है गुरुजी को ट्रैक्टर के अंदर बिठाया है।

और पीछे एक लड़की को एक लड़का बोट वाला--

हाथ में लकड़ी पकड़कर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।